पत्थर है पीछे ग्रीन कलर वाइट कलर की दीवार--

सामनेही हमें टेंट लगा हुआ दिख रहा है।

रेड कलर की और सामने ही हमें फ्लोर का कलर भी यहां दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का।

सामने कुछ पेड़ लगे हुए हैं और कुछ वायर्स है।

साथ में बहोत सारी ही हमें यहां पर ब्लू कलर का आसमान दिख रहा है।

पीछे हमें आसमान दिखाई दे रहा है जो कि व्हाइट कलर का दिख रहा है।

कुछ बिल्डिंगस जो कि व्हाइट कलर की है।

दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर की शर्ट में कुछ लोग--

पीछे कुछ पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं जो की ग्रीन कलर के प्लांट्स --

यह पुरा सोफा लगा हुआ कुछ गद्दे रखे हुए है।

दो शॉप भी यहां पर दिखाई दे रही है एक शॉप --

इस पिक्चर में हमें यहां पर प्लस दिखाई दे रहे हैं।

सामने व्हाइट कलर की विंडोज है पीछे व्हाइट कलर की--

पिछे की ओर आसमान दिख रहा है बिल्डिंग्स दिख रही--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

पिक्चर में हमें जिम का सामान दिख रहा है जो कि यहां पर हमें--